ये कोरोना काल चल रहा है जो सब लोग को कोविड नाइनटिन के वैक्सीन देने आए हैं। चार पुरुष एक महिला हैं। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट डोज है जो सबको दे रहे हैं।

ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे पार्टी हो रही है सब लोग आए हैं निमंत्रण दिए गए हैं यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है अभी स्टार्ट हुई है।

यह देखिए स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग पाइप के थ्रू नीचे आते हैं और पानी में गिर के मजा लेते हैं देखने में बहुत सारे स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं।